और उसके बगल में वायर जोड़ा हुआ वायर के ऊपर उ एक काला कलर का वायर भी गया हुआ है सीढ़ी के रास्ते और बाजे के ऊपर एक कोकोकोला का बोतल रखा हुआ और बगल में व्हाइट कलर का बॉक्स है जो की बहुत साउंड देता है ।

और उसके बगल में एक फ्रिज लगा हुआ है जो कि पानी ठंडा करने के लिए अम आरामदायक होता है। ठंडा पानी।

एक चिड़ियाघर है जिसमे की बत्तख है और बहुत काला बत्तख है जो की देखने में सुंदर लग रहा है। ऊपर एक --

ए उ काला कलर का है लगा हुआ है जो की अच्छा लग रहा है देखने में और इसके ठीक इसके बगल में पानी रखा गया एगो पत्थर रखा हुआ है नीचे जो की पत्थर रखा हुआ हैं नीचे पेंट उंट लगा हुआ है लोग देख रहा है बहुत अच्छे से।